दो जगह कलर है ब्लैक एंड सिल्वर ।

इस पिक्चर में मुझे दो इंसान दिखाई दे रहा है।

और कुछ गाड़ियां साइड में दिखाई दे रहा है।

और लाइट पोस्ट और वायर्स दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे दो प्रिन्टर बाक्स और व्हाइट कलर का बॉक्ससे दिखाई दे रहा है।

और ड्रॉवर का चाबियां लगा के है।

एक साइड का वॉल ब्लू एंड येलो है।

और बहुत सारा गच्छे और पहाड़ दिखाई दे रहा है।

एक सी_सी_टी_वी कैमरा दिखाई दे रहा है।

कुछ लोगों का चेहरा ढका हुआ है।

और बहुत सारा लाइट बल्ब जलते हुए नजर आ रहा है।

और बहुत सारा कपड़ा झापके दिखाई दे रहा है अलग अलग कलर --

इस पिक्चर आठ लड़के दिखाई दे रहे हैं।

एक रेस्टोरेंट है सामने में एक आदमी बैठे हुए नजर आ रहा है।